यह एक स्टोर है जहां कि बहुत सारे गिफ्ट फुटबॉल हॉकी वॉली बॉल दिख रहे है।

यह एक बड़ा सा रूम है जहाँ ऐ_सी गुलदस्ते सारे है गुलदस्ते बहोत सारे है ऐ_सी एक---

जहाँ पे मूर्तियों बनी है रोड बनी है और हरी-भरी घास है और ऐक छोटा सा घर बना है और दो-तीन लोग हैं यहाँ।